यह एक पेट्रोल पंप का सीन है जहां पे दो पेट्रोल पंप वाली मशीन रखी हुई है उसके पीछे एक कार और उधर साइड में एक बाइक भी है जिसके साइड में येलो कलर के बेरीकेट्स बहुत सारे रखे हुए हैं।

लेफ्ट साइड वाले सेल्फ पे बहुत सारे टायर्स रखे हुए हैं।

राइट साइड में सेल्फी लिखा हुआ है और पोस्टर टांगा हुआ है और नीचे साइड में मोबाइल के बहुत सारे एसेसरीज रखा हुआ है।

यह एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जिसके राइट साइड में रेलवे स्टेशन ऑफिसर्स के क्वार्टरस है।

पूरे दीवाल पे पिक्चर बना हुआ है जिसमें जूते के बहोत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं।